यहाँ पर लोहे का आ रेलिंग भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर बड़ा- सा पेड़ भी हमें दिखाई दे रहा है।

उनके पास बाल्टी हमे दिखाई दे रही है।

काँच दिखाई दे रहे है एक खिड़की हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।

सामने दिवार हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है ऊपर छत दिखाई दे रही है।

फिसलपट्टी भी दिखाई दे रही है।

और ऊपर छत हमें दिखाई दे रही है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

फूल उन भी हमें दिखाई दे रहे है।

पेड़ उन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे है ऊपर आसमान भी हमे दिखाई दे रहा है ।

और बाहर एक बड़ा- सा बोर्ड भी हमें लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

नीचे वॉचमैन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है काँच के गेट हमें दिखाई दे रहे है।

बाइकोन यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है कार हमें दिखाई दे रही है।

आस- पास हमें बिल्डिंगे भी नज़र आ रही है।

जहाँ पर बाहर एक बड़ा- सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आइड साइड भी हमें शॉप दिखाई दे रही है बाहर हमें बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बाइकउन खड़ी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सामने एक नगर पालिका निगम दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर बाहर यहाँ पर बहोत सारे पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

बड़ा -सा गेट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर हमें एक नदी दिखाई दे रही है जिसमे पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

सड़क हमें दिखाई दे रही है जाने का रास्ता भी हमें दिखाई दे रहा है सामने पेड़- उड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे है।

साइड में माइक में एक व्यक्ति बोलता हुआ दिखाई दे रहा है चेयर पर लोग उन यहाँ सामने बैठे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें बेड दिखाई दे रहे है और नीचे बॉल भी रखी हुई दिखाई दे रही है अलग- अलग वाइट कलर में ऑरेंज कलर में रेड कलर में--

खिड़कियाँ हमें दिखाई दे रही है दिवार हमें दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सामने एक शॉप दिखाई दे रही है जहाँ पर बेंच लगी हुई है उसके ऊपर बर्नी --

--रखी हुई है उनके अंदर सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति बैठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है।

और सामने पाउच उन टंगे दिखाई दे रहे है।

और एक एक और पास में बस दिखाई दे रही है और सामने हमें दिवार दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें सड़क दिखाई दे रही है और एक कार जाती हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर सामने बड़ी -सी बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर बिजली का तार हमें दिखाई दे रहे है।

आइड- साइड हमें यहाँ पर झाड़ियाँ दिखाई दे रही है और सामने बड़े- बड़े पेड़ हमें दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें सामने एक शॉप दिखाई दे रही है।

ऊपर यहाँ बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने--

लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है फूल-उन दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमें सड़क दिखाई दे रही है जहाँ पर एक बाइक रखी हुई है कार रखी हुई है।

सामने एक बस खड़ी हुई है।

और शेर की भी दिखाई दे रही है।

बना हुआ दिखाई दे रहा है सड़क दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक शॉप दिखाई दे रही है एक केक की--

लगी हुई दिखाई दे रही है पर --

बाइक उन दिखाई दे रही है कार रखी हुई दिखाई दे रही है ठेला हमें दिखाई दे रहा है।